यहाँ में घर दिखाई दे रहा है और ये घर को व्हाइट कलर से पेंट करके है।

ऑनर में बहोत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

मेले का सामने में काफी ज्यादा आदमी भी दिखाई दे रहा है।

जोकि वाइट कलर से पेंट करके और ऊपर में ब्लू कलर से पेंट करके--

पेड़ के नीचे में बहुत ज्यादा फुल पत्ती दिखाई दे रहा है।

यहां में बहोत सारा मूर्ति दिखाई दे रहा है।

यहां में एक सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है जो की व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

ऊपर में फैन भी लटका के है और टी_वी भी दिखाई दे रहा है।

यहां में घर दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर में टीना लगाके है।

रोड के सामने में आदमी भी दिखाई दे रहा है।

डॉक्टर के सामने में एक चेयर भी है ब्लैक कलर का।

आगे में भी बहुत ज्यादा टीचर दिखाई दे रहा है।

ऊपर में येलो कलर का त्रिपाल भी लगा के है।

गारी का रास्ता में बहोत ज्यादा गारी और स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

यहां में बहुत ज़्यादा आदमी दिखाई दे रहा है।

ये एक घर का रूम है ये रूम को व्हाइट कलर से पेंट करके है।

ये जो एक रूम है ये घर को जो है व्हाइट और येलो कलर से पेंट करके है।

पानी का ऊपर में एक नाउ भी है।

हमें काफी पहाड़ और पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

क्योंकि एक लरका का हाथ में कपड़ा वाइट कलर का पकड़ के भी दिखाई दे रहा है।

ये घर व्हाइट और ब्राउन कलर से पेंट करके है।